सामने सफ़ेद कलर की नंदी महाराज की मूर्ति लग रही है और ऊपर लोहे की रेलिंग रखी हुई है।

अगल बगल बहुत सारी हरियाली पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर चट्टानों मे से सफ़ेद कलर का पानी दिखाई दे रहा है।

मिट्टी की हाथ की प्रतिमा बनाई गयी है यहा पर अ एक हाथ की पाँच उंगलिया दिखाई दे रही है और एक हाथ की दो उंगलिया दिखाई दे रही है।

सामने टोकरियों में बहुत सारी सब्जिया दिखाई दे रही। यहाँ पर दो आदमी खड़े है। यहाँ पर एक आदमी है जो मास्क लगाए हुए खड़ा हुआ है। यहाँ--

यहा पे सिर्फ तीन चार लोग खड़े हुए है यहा र र र सामने टोकरीया मे बहुत सारी सब्जी है।